सामने एक पोस्टर लगाया हुआ है उसपर कई सारा दृश्य दिख रहा है।

चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं कुर्सी लगाया हुआ है।

यहां पर बिल्डिंग का दृश्य दिख रहा है।

बगल में बहुत सारे गाड़ी हैं और स्कूटी हैं।

दोनों तरफ झंडा लगाए हुए हैं जो रंग बिरंगे हैं।

एक झंडा गाड़ा हुआ है ऊपर में मल्टी कलर का।